यह एक बहुत ही अच्छी सीनरी है जिसमे छे पेड़ व अशोका के पेड़ है।

दृस्टी हीन नजारा हैं जिसमे दिखा सकते हैं पिले कलर के गुब्बारे लाल कलर के गुब्बारे और वाइट कलर के गुब्बारे और पिले कलर का रिबन लाल कलर का रिबन और ऑरेंज कलर का रिबन हैं।